और इसके आसपास बगीचा है। सुंदर वायुमंडल है।

और उसको पकड़ कर ले जा रहे हैं और यहाँ पे बोहत से घास पत्तियां इत्यादि हैं।

और ऊपर वायुमंडल है उसके बगल में पेड़-पौधे इत्यादि हैं और जो बोहुत ही हरे-भरे दिख रहे हैं।

बोहुत सारे मशीने हैं।